पीछे वाले रोड पे मुझे कुछ ट्रक भी दिखाई दे रहे हैं।

जिसपे न्यू कसौटी ज्वेलर्स लिखा गया है।

सामने मुझे दो चार पहिया वाहन दिखाई दे रहा है।

बीच में मैं कुछ पत्थरों को भी देख सकती हूं।

एक पेपर और एक जग रखा हुआ है।

यहां पे मुझे बड़ी बड़ी मशीने दिखाई दे रही हैं।